सामने बहुत सारे गिटार रखे हुए हैं लाइन के लाइन बाहर गिटार रखे हुए हैं बाँसुरी रखी हुई है नीचे बहुत सारे बक्सें रखे हुए हैं एक ढोलकी रखी हुई है।

सामने एक पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है जिसमें इंडियन ऑइल पेट्रोल डीजल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने शुद्ध तेल पूरा माफ़ लिखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ --